बहुत बेहतरीन बेहतरीन तरीके की साइकिल यहाँ मिलती है छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों से लेकर अडल्ट अडल्ट तक और लेबर वाले साइकिल भी यहाँ पे मिलती है और रिपेयरिंग होती है और ये दुकान जामताड़ा में है।

यह एक मोबाईल की दुकान है।

यह बहुत बड़ी मैदान है तरह-तरह के फेस्टिवल फँकसंस इवेंट्स यहाँ पे होते हैं।

ये माॅं दुर्गा की मूर्ति है जो कि सर को माॅं दुर्गा के सामने से खिचा गया है फेस को और मूर्तिकार ने बहुत अच्छी तरीके से माॅं दुर्गा को बनाया है।

बहुत ही धूमधाम से मेला होता है यहाँ पे काफी भीड़ होती है और तरह - तरह के झूले आते है यहाँ पे और तरह - तरह के खाने की चीजे आती है खलौने की चीजे आती है घर की सामान की चीजें आती है ।

शादी का शादी है घर मे और रेसेपसन के दिन मे दूल्हा दुल्हन जहां पे बैठते है मेहमान वेट करते है फ़ोटो खिचाते है गिफ्ट देने के लिए आते है वो जगह अच्छे से सजाई गई है।